इधर तीन चार आदमी दिखाई दे रहा है और एक आदमी कुछ तो लिख रहा है।

रस्ता तो पूरा ऑरेंज कलर का है।

दिखाई नहीं दे रहा है मगर कुछ तो है वजन वाला।

ब्राउन कलर का जो है उसमें भी ये स सब वो सब लोग दिखाई दे रहे है।

एक सोसाइटी जैसा दिख रहा लग रहा है और बाजू में नारियल के पेड़ है बहुत सारे और गा --

इसमें बहुत सारे मसाले मैगी है और रस्सी है।

और बेस्ट है ओ सब बेचरल बेचने का दुकान होना ऐसा लग रहा है कि दुकान है संभाल--

हॉस्पिटल बगैरह में रखते है ना ऐसे अम्म बैठने का है जैसे हॉस्पिटल हो ऐसा लग रहा है ।

कुछ तो कंप्यूटर में कर रहा है।